यहां पर बहोत सारे ऑयल के डब्बे और बहोत सारी बाइक रिपेयरिंग करने के औजार भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

ये किसी भागवत आयुर्वेदा की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग नजर--

यहां पर एक बुलेट बाइक खड़ी हुई है जिसके बहुत सारे पार्ट्स खोल कर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसके आस पास कुछ टू व्हीलर गाड़ियां भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।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

ये किसी बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक बहोत ही बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

ये एक बहोत ही बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है इसमें एक लोहे की कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक छवि कलेक्शन की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर लेडिस के सूट वगैरह टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

उसी के पास में एक तनिष्क चुन्नी वाले की दुकान दिखाई दे रही है जहां बाहर की ओर बहोत सारी चुनियाँ टंगी हुई --

चलती हुई नजर आ रही है यहां पर किसी कुछ लड़कियों ने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

तिरंगे वाली चुन्नी लगाई हुई है जो गा बैठकर योगा करती हुई नजर आ रही है।

यह किसी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है यहां पर --

ये एक वी मार्ट की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर--

ये किसी कॉफ़ी की दुकान दिखाई दे रही हैं जहां पे एक लड़के के द्वारा कॉफी बनाई जा रही हैं।

ये किसी पुल की फोटो दिखाई दे रही है जो की एक बहुत ही बड़ा सा बना हुआ पुल नजर आ रहा है।

यह किसी गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे पीछे की तरफ एक फाउंटेन लगा हुआ दिखाई दे रहा है।